शेटर लगा हुआ है जो ब्लू कलर का है।

कोको कोला लिखा हुआ है।

पीछे साईड में छोटा छोटा पहाड़ है।

और तीन खजूर का पेड़ है।

फोटो में घर बन रहा है।

एक लेडिस के गोद में बच्चे हैं।

किताबें रखी हुई है जो रेड कलर ब्लू कलर येलो कलर की है।

और बहुत सारी लाइट जला हुआ है छोटे छोटे खिड़कियां है।

ग्रीन कलर से ब्लू कलर से रेड कलर वाइट कलर से बना रही है।

दो बच्ची माक्स लगाई हुई है।

एक व्यक्ति बैठे हुए है।

तो यह दिख रहा है सोफा लगा हुआ है।

और एक सार है जिनके हाथ में बुक है।